इस इमेज में मुझे सबसे बढ़िया लगा है जो हैं नीचे का साइड का जो ग्रीन कलर का बड-- डला हुआ हैं चादर वो--